इस पिक्चर में एक समुन्द्र का किनारा दिखाई दे रहा हैं जहाँ पर काफी सारी नाव खड़ी हुई हैं।

इसमें बोहोत सारी गाय दिखाई दे रही हैं जिसमें कुछ गाय भूरे कलर की हैं और एक भूरे कलर की गाय का बच्चा भी है एक बाल्टी है और एक पेड़ है।

--और यहाँ पर एक बड़ा-सा पीपल का पेड़ नज़र आ रहा है का सभी बच्चों ने मास्क पहना हुआ है और सभी स्कूल की ड्रेसस में है।

और यहाँ पर काफी सारे खजूर के पेड़ दिखाई दे रहे हैं जो होटल हैं वो सफ़ेद रंग का पोता हुआ हैं और काफी आलीशान बना हुआ हैं।

और एक व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ है लाल टी शर्ट पहन कर और एक व्यक्ति जो कि सड़क पर जा रहा है और इस दुकान के अंदर पोस्टपेड शायद एयरटेल का ऑफिस है।

ये एक गैराज टाइप में है और इसमें काफी सारी मशीने है जिस जो कि कार को ठीक करने के रिपेयर करने के काम आती है।

यहाँ एक बोहोत ही बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही है जो कि पीलेगुलाबी और एक भूरे रंग से पुती हुई है।

एक मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति है एक टेम्पो सामने से नजर आ रहा है लाल रंग का और यहां पे काफी सारे बिजली के खम्बे हैं।

ये टमाटर देखने में देशी टमाटर नजर आ रहे हैं जो की देशी टमाटर सब्जी बनाने के बहुत काम आते हैं।